यह मैदान है यह मैदान में ग्राउंड है यहाँ पर एक घर है यह घर की है यहाँ पर एक घर उठाया गया है यह घर का काम अभी शुरू हो रहा है यहाँ पर अभी --

ये मस्जिद है ये मस्जिद काफी बड़ा है इस मस्जिद में बहुत सारे मुसलमान भाई आकर नमाज़ पढ़ते है ।

यहाँ पर फुटबॉल क्रिकेट आदि खेला जाता है यहाँ पर बहुत से बच्चे अभी खेल रहे हैं।

ये यह नदी का पानी में बहुत से किट-पतंग भी रहते हैं यहाँ पर बहुत सारे आदमी आये हुए हैं यह सभी छठा कर रहे हैं यह सब पानी के अंदर हैं ।